साइकिल भी दिखाई दे रहे हैं।

एक गाड़ी और कई सारे बाइक्स भी दिखाई दे रहे हैं।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

भी दिखाई दे रहे है।

कई सारे टीना भी दिखाई दे रहा है।

सड़क के ऊपर पत्तियां दिखाई दे रही है।

आस पास कई सारे फूल के गमला भी रखा हुआ है।

और दो सफेद गाड़ियां भी हैं।

बिल्डिंग के अंदर कई सारे टेबल और कुर्सियां हैं।

टेबल के ऊपर केचअप भी रखा हुआ है।

ऊपर में फूल के डिजाइन भी टंगाया हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में दो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में कई सारे पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं।

सामने में एक स्ट्रीट लाइट भी है।

औरत के हाथ में अगर झंडा पकड़ा हुआ है।

जिसमें बहुत सारा टॉयलेट भी है।

और दीवार पर कई सारे आईना भी लगाया हुआ है।

और एक बाल क्लब भी दिखाई दे रहा है।

दीवार पर कई सारे स्विच बॉक्स भी लगाया हुआ है।

सामने में दीवार भी है।

जैसे कई सारे शोस साबुन और मिठाइयां दिखाई दे रहे हैं।

और सीढ़ियां भी दिखाई दे रहे हैं।

बाहर एक टेंट दिखाई दे रहा है।

ये दीवार पर कई सारे पोस्टर भी लगाया हुआ हैं।

औरतें रंग बिरंगा साड़ी पहने हुआ है।

सामने में एक बड़ा सा नदी भी है।

सामने में कई सारे वाटर टैंक भी है।

और कई सारे पर्दे भी टंगाया हुआ है।

सामने में दो टावर भी है।

सामने में दो लड़कियां भी हैं।

लड़कियों के हाथ में दो कैंडल भी पकड़ा हुआ है।

अलमीरा के अंदर कई सारी मिठाइयां भी रखा हुआ है।

पास में एक बैग भी रखा हुआ है।

कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और कई सारे रंग बिरंगे गुब्बारे भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक टेबल दिखाई दे रहा है।

सामने में कई सारे पर्दा भी है।

कई सारे स्कैनर भी रखा हुआ है।